यहा पर मुझे बहोत सारे घरे दिखाई दे रही है जो सफेद कलर की है और काले कलर की है और मिट्टी कलर की है।

यहा पर मुझे एक स्टेज दिखाई दे रहा है जो काले कलर का है और पिंक कलर का है।

में एक लाइट दिखाई दे रही है जो पिंक कलर के है और कुछ लोग दिखाई दे रहे है जो बेठे हुए है।

और कुछ कुड्सिया दिखाई दे रही है जो लाल कलर की है और एक बड़ा सा टेबल दिखाई दे रहा है जिसमे कपड़ा बिछाया हुआ है जो लाल कलर --

यहा पर मुझे एक पार्क जेसा कुछ गार्डन दिखाई दे रहा है जिसमे बहोत सारे छोटे छोटे घास दिखाई दे रहे है जो हरे कलर के है।

और एक राउंड शेप में टेडी दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है।

यहां पर मुझे एक बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है जो ब्ल्यू कलर का है और हल्का हरा कलर का है।

में बहोत सारी खिडकिया दिखाई देर ही है जो सफेद कलर की है और एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है जो सफेद कलर का है।

का है और क्रीम कलर का है और कुछ लोग दिखाई दे रहे है जो खडे है।

और बहोत सारे पनिके दिखाई दे रही है जो रोड पे फेली हुई है जो सफेद कलर की है।

और एक घर दिखाई दे रहा है जो ग्रे कलर का है और कुछ पेड़ पोधे दिखाई दे रहे--

यहा पर मुझे एक बड़ा सा मंदिर दिखाई दे रहा है जो सफ़ेद कलर का है और पीले कलर का है।

और दो शेर के स्टेचू दिखाई दे रहे है जो येलो कलर के है और मिट्टी कलर के है।

और कुछ पेड़ पोधे दिखाई दे रहे है जो हरे कलर के है और कुछ कारे दिखाई दे रही है जो काले कलर --

बहुत सारी लाइट लगी हुई दिखाई दे रही है जो वाइट कलर की है।

यहा पर मुझे एक बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है जो हरे कलर का है और मिट्टी कलर का है और सफेद कलर का है।

में बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है जो बेठे हुए है और कुछ साइकिले दिखाई दे रही--

यहा पर मुझे तिन लडकिया दिखाई दे रही है जो बेठी हुई है जिन्होंने लहंगा पहना हुआ है।

और कुछ ज्वेलरी दिखाई दे रहे है जो वाइट कलर के है और कुछ हाथ में लगाये हुए है जो लाल कलर के है।

यहाँ पर मुझे एक झरना दिखाई दे रहा है जो सफ़ेद कलर का है।

और कुछ छोटे पत्थर दिखाई दे रहे है जो ग्रे कलर की है और मिटटी कलर --

यहाँ पर मुझे एक आदमी दिखाई दे रहा है जो चाय दे रहा है जिसके हात में एक बरतन दिखाई दे रहा है जो ग्रे कलर का है।

और एक बरतन दिखाई दे रहा है जो ग्रे कलर का है और एक रूम दिखाई दे रहा है जो सफ़ेद कलर का--

यहाँ पर मुझे एक छोटासा रूम दिखाई दे रहा है जो सफ़ेद कलर का है।

यहाँ पर मुझे एक किताब का दुकान दिखाई दे रहा है जो सफ़ेद कलर का है।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

और एक बड़ा सा रूम जैसा दिखाई दे रहा है जो सफ़ेद कलर का है और मिटटी कलर का है।

जो कुछ माइक में बोल रही है और एक बड़ा सा चर्च का रूम दिखाई दे रहा है जो सफेद कलर का है।

और एक स्टेचू दिखाई दे रहा है जो सफेद का है काले कलर का है।

यहाँ पर मुझे कुछ फुले दिखाई दे रही है जो पीले कलर की है और वाइट कलर की है और रेड कलर की है।

यहा पर मुझे एक स्टेचू दिखाई दे रहा है जो गोल्डन कलर का है और कुछ राउंड शेप में बने हुए है जो ग्रे कलर के है।

यहां पर मुझे एक बहोत बड़ा सा बगीचा दिखाई दे रहा है जिसमें बहोत सारे घास दिखाई दे रहे हैं जो हरे कलर के हैं।

और कुछ फुल दिखाई दे रहे है जो पीले कलर के है और लाल कलर के है।

इसमें बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है और कुछ बाइके दिखाई दे रही है जो काले कलर की है।

यहां पर मुझे एक बड़ा सा दुकान दिखाई दे रहा है जो सफेद कलर का है।

इसमें बहोत सारी किताबे दिखाई दे रही है और कुछ समाने दिखाई दे रही है जो रखे हुए है।

और कुछ कारे दिखाई दे रही है जो काले कलर की है और बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है जो हरे कलर के है।

यहा पर मुझे बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है जो खडे है और कुछ के माथे पे पगड़ी दिखाई दे रहा है जो ब्लू कलर के है।

कलर का है हरे कलर का है और कुछ कारे दिखाई दे रही है जो काले कलर की है।

इसमे कुछ कपड़े बंधे हुए है जो लाल कलर के है।

यहां पर मुझे एक आधा कार दिखाई दे रहा है जो ग्रे कलर का है और एक चक्का दिखाई दे रहा है जो काले कलर का है और ग्रे कलर का है।

और एक राउंड शेप में एक मशीन दिखाई दे रही है जो ब्लू कलर के है इसमें सफ़ेद कलर से कुछ लिखा हुआ है।

यहां पर मुझे एक बड़ा सा रूम दिखाई दे रहा है जो ग्रे कलर का है इसमें कुछ लाइनें बनी हुई हैं जो सफेद कलर की है।

में तीन लाइटें दिखाई दे रही है जो लगी हुई है जो व्हाइट कलर की है।

यह पर मुझे बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है जो हरे कलर के है।

यहा पर मुझे एक बड़ा सा रोड दिखाई दे रहा है जो ग्रे कलर का है मिट्टी कलर का है।

और एक पहाड़ दिखाई दे रहा है जो काले कलर का है।

यहां पर मुझे एक डैम दिखाई दे रहा है जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर का है जिसमें बहोत सारे पानी दिखाई दे रहे हैं जो सफेद कलर के हैं।

और कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है जो हरे कलर के है और एक फुल दिखाई दे रहा है जो ग्रे कलर का है और हरा कलर का है।

और कुछ फुले दिखाई दे रही है जो ऑरेंज कलर की है और कुछ केले के पत्ते दिखाई दे रहे है जो हरे कलर के है।

और बहोत सारे पेड़ दिखाइ दे रहे है जो हरे कलर के है और एक कुड्सी दिखाई दे रहा है जो लाल कलर का है।

यहा पे मुझे एक रोड दिखाई दे रहा है जो ग्रे कलर का है जिसमे कुछ लकीरे दिखाई दे रही है जो सफेद कलर की है।

और कुछ बाइके दिखाई दे रही है जो काले कलर की है और कुछ लोग दिखाई दे रहे है और कुछ पेड़ पोधे दिखाई दे रहे है जो हरे कलर की है।

और कुछ गमले रखे हुए दिखाई दे रहे है जो पीले कलर के है और मी--

यहा पर मुझे एक टेम्पू दिखाई दे रहा है जो पीले कलर का है और काले कलर का है और काच लगा हुआ है जिसके चारो तरफ--

बोडर दिखाई दे रहे है जो काले कलर के है इसमें ब्लू कलर से कुछ लिखा हुआ है।

यहा पे मुझे एक बड़ा सा समुन्द्र दिखाई दे रहा है जो सफेद कलर का है और ग्रे कलर का है।

और एक सूरज दिखाई दे रहा है जो हल्का येलो कलर का है और एक घर दिखाई दे रही है।

और एक ब्लू कलर का है जिसमे वाइट कलर से कुछ बना हुआ है।

और बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ पोधे दिखाई दे रहे है जो हरे कलर के है और एक स्टेचू दिखाई दे रहा है।

एक समन्दर दिखाई दे रहा है जो ग्रे कलर का है जिसमे कुछ लहरे उठ रही है जो ब्लैक कलर की है वाइट कलर की है।

और कुछ लोग दिखाई दे रहे है जो कुछ खडे है जो कुछ बेठे हुए है जो कुछ नहा रहे है।